हमें यहाँ बोहोत सारा मैदान सा दिख रहा हैं यहाँ बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

हमें यहाँ पे बोहोत सा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर बड़ी पत्थर भी है यहाँ एक दल बैठे हुए भी दिखाई दे रहा है छोटी छोटी चिड़िया भी दिखाई दे रही हैं।